और ऊपर बहोत सारे पंखे लगे हुए हैं बहोत सारे लाइटे लगी हुई है खिड़कियां दरवाजे सब बंद है।

डाला हुआ और सामने बहोत बड़े बड़े पाइप भी रखे हुए हैं और हवा भरने वाला मशीन हैं।